एंड नीचे रेड कलर की जो है मेट बिछी हुई है पीछे आप देख सकते है ब्लैक कलर का पर्दा लगा हुआ है साइड में भी आप देख सकते है रेड कलर का पर्दा है बहुत ही प्यारा डेकोरेशन --

गाइस जैसा की आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक बहोत बड़ा-सा ऑटो दिखाई दे रहा होगा उसके बगल में भी एक ऑटो खड़ा है पीछे देखेंगे आपको एक आदमी दिखाई दे रहा है साइड में भी--